कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुर्सी भी रखी हुई है और पीछे इनके लोहे का जाल भी लगा हुआ है।

ये एक नाई की दुकान है और यहां पे कुछ कुर्सियां रखी है।

अंदर ए_टी_एम की मशीन भी रखी हुई है और लाइट भी लगी हुई है।

ये एक मंदिर है और इसमें ऊपर कुछ फूल लग रही है।

और वहां पे एक नीले कलर की टंकी भी रखी हुई है।

और इसके पास में नीचे कुछ ईंट बिछी हुई है।

और यहां पे कुछ घास भी लगी हुई है और कुछ पौधे भी लगे हुए हैं।

और सामने एक स्कूल दिखाई दे रहा है और उसमें गेट लगा हुआ है और खिड़की भी लगी हुई है।

ये एक ऑफिस है और यहाँ पे काउंटर रखा हुआ है।

एक काउंटर भी रखा है उसपे कुछ सामान रखा हुआ है।

और यहां पे कुछ कुर्सीयां भी रखी है और यहां पे दो आदमी बैठे हुए हैं और एक लेडिस बैठी हुई है।

और दीवाल में कुछ बैनर लगे हुए हैं जिन पर कुछ तस्वीरें उतारी हुई हैं और सामने शीशे भी लगे हुए हैं और एक ए_सी भी लग रही है।